साथ में एक फोन भी बना--

उसके ऊपर डी_जे फ्रेंड्स लिखा हुआ है।

देखने से यह तस्वीर हमें किसी--

कॉलेज का नाम ग्लोबल पॉलिटेक्निक कॉलेज है।

रंग की हट है दिख रही है।

इसमें हमें बहोत सारे टायर्स पड़े हुए नजर आ रही है।

सोहन गर्ल्स नेचुरल फार्म्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें कुछ कारें खड़ी हुई नजर--

मशीन की लग रही है।